यह तस्वीर रात के समय की है। जहाँ हम देख सकते है यहाँ अलग अलग कलर के फब्बारे निकल रहे हैं।

वीडियो बना रहा है। जिसमे हम देख सकते हैं की इसने हल्के रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है। जिम का ज्यादातर सामान पीला है।

इनके पास एक आदमी खड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें सूरज और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

हमें इस तस्वीर मै एक लाइब्रेरी दिखाई जा रही है। जिसके अंदर बहोत सारी अलमारिया भी हैं।

टोपी पहने खड़ा हुआ तू एक तरफ देख रहा है। यह नीला आकाश भी दिखाई दे रहा है।

इस सड़क के एक तरफ हमें खाली मैदान के अंदर पानी भरा दिखाई दे रहा है। यह नीला आसमान भी है।

यह एक शॉपिंग मॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है- जिसके अंदर हमें औरतों के कपड़े और कुछ --

यह एक कंप्यूटर लैब की तस्वीर है। जहाँ हमें कई सारी स्टील की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

जो दूध लेने के लिए खड़े हुए है। इस तस्वीर मै हमें एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े होके बाते कर रहे हैं।